इस तस्वीर के अंदर हमें कारें खड़ी नज़र आ रही हैं लाइन से कार खड़ी हुई हैं और आगे सबसे अ हमें सफेद रंग की और लाल रंग की कार --

इस तस्वीर में हमें नीला बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है जिस पर अंन अकादमी सेंटर लिखा हुआ है।

और बाहर और बेल्डिंग के पास ही बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं और पूरी जगह खाली पड़ी है।

इस तस्वीर के अंदर हमें बड़े बड़े टायर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं लाइन से जमे हैं।

हमें अ दो चौकीदार खड़े हुए नज़र आ रहे हैं गेट के पास और ये जो गेट लिखा है इसके बना है इसके ऊपर लिखा हुआ है आई_आई_एस_इ_आर ।

इस तस्वीर के अंदर हमें हरी दीवारें नजर आ रही है और गुलाबी रंग का एक पर्दा है जिसके पास टीवी लगी हुई है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है बाहार शेड लगा हुआ है।

साइकिल खड़ी है और एक बेंच लगी हुई है लाल रंग की।

एक स्टेज बना हुआ है जिसके ऊपर महेंद्र लिखा हुआ है।

हमें ये पेट्रोल पंप का रास्ता दिखाई दे रहा है और जिसके आसपास हमें हरा हरियाली भी दिखाई दे रही है।

और हमें कुर्सियों पर बैठे हुए लड़के लड़की--

एक दुकान जिसमें गाड़ियों का अ सामान हमें रखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऑयल और और भी सामान--

और दूर-दूर तक हमें पेड़ हरे भरे नजर आ रहे हैं और बीच में बड़ा तालाब भरा हुआ है।

जिसमें पानी की टंकी के अंदर पाइप बहुत सारे रखे हुए हैं।

और बहुत सारे लोग हमें चलते फिरते बैठे नजर आ रहे हैं गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

और जिसके ऊपर लिखा हुआ है अमृत उद्यान गुआहाटी ।

हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

पैंट्स एंड हार्डवेयर का बोर्ड लगा हुआ है और एक दुकान दिखाई दे रही है हमें अ--

उस जगह का ये दृश्य है और लोग चल फिर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं।

और टमाटर ये सब रखे हुए दिखाई दे रहे है।

हमें एक गार्डन एरिया दिखाई दे रहा है हरी भरी घास है और बेंच भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक गेट लगा हुआ है शर्टर डाला है और सीढ़ियां गई हैं और बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है मीनेश ई रजिस्ट्री सेंटर ।